एक पूल जा रहा है। पूल के नीचे से पानी बह कर जा रहा है। उसमे एक व्यक्ति अपने बच्चे का हात पकड़ के खड़ा हुआ है।

एक व्यक्ति है जो सामने देख रहा है। उसने बेबी पिंक कलर की टी-शर्ट पहनी रखी है। जिम मे और भी व्यक्ति है जो एक्सरसाइज़ कर रहे है।

रिक्सा गाड़ी है जो व्यक्ति उसके पास खड़ा हुआ है एक लेडिज छत पर खड़ी हुई है एक गाय दिख रही है।

साड़ी दो लेडिजो ने साड़ी पहन रखी है तीन जेन्टस खड़े हुए है पुल टंग रहे --

बैंक का ए_टी_एम अह ए_टी_एम दिखाई दे रहा है एक व्य --

व्यक्ति मोबाइल देख रहा है और म्म बैनर लग रहा है बी_बी_ए बी_कॉम पी_यू_सी पास मे गमले रखे हुए --